ऐसी ए _सी नजर आ रहा है कुर्सी नजर आ रहे है टाइल्स नजर आ रही है दीवार नजर आ रहा है कुत्ता नजर आ रहा है।

बिल्डिंग नजर आ रही है लाइट्स नजर आ रहे है केबल नजर आ रहे है बिल्डिंग मे खिड़कियां नजर आ रही हैं झालर नजर--